यहाँ कर अ यहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत बेचैन होते।

अम यहाँ इनका कलर रेड और व्हाइट शेडिंग से हैं।

यह बिल्डिंग नागपुर के महानगर पालिका की है महा नगर पालिका --

यह एक गणेश फ्लावर शॉप है यहाँ हर तरह की फ्लॉवर्स मिलते हैं फूलें मिलते हैं इनका--

एक रेस्टोरेंट है और पब टाइप भी है यहाँ पे पब वाली पार्टी भी होती है रेस्टोरेंट वाला भी खाना वाना मिलता --

एक ये अ डोर बनाया गया उसके अंदर जाने के लिए।

कलकत्ता की अससोसिएट यहाँ पे --

मिलते हैं भी मिलते हैं इन टाइप की हर चीज़ मिलते हैं।